पीछे बड़े-बड़े पत्थर रखे हुई है और पीछे बड़ा-सा फील्ड भी नजर आ रहा है| बहुत से पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं| काफी सुन्दर व्यू है ये।

यहाँ पे गुफा जैसा लग रहा है और बहोत से लोग यहाँ आए हुए है अ घूमने के लिए ये एक पर्यटक स्थल लग रहा है।

लोग यहाँ पे घूमने आते हैं सैर करने आते हैं बहोत सुन्दर सा लग रहा है ये व्यू अ पतली सी पहाड़ से निकलती हुई एक सडक से नज़र आ रही है जो बहोत सुंदर व्यू लग रही है।

सामने पेड़ दिख रहा है और ये काफी बड़ी नदी है और नाव दिख रहा है| नदी के ऊपर बहुत ही सुन्दर-सा दूर-दूर पहाड़ --

चर्च है और चारो तरफ ग्रीन - ग्रीन है| पेड़-पौधे हरियाली है यहाँ पे और बहुत साफ़-सुथरा सा आगे फील्ड है बहुत सुंदर पीक ली हुई है ये।